मौसम थोड़ा बरसाती हो रहा है।

जोकि ऑरेंज कलर से पूरा पेंट किया हुआ है ।

जिसमें कुछ लड़कियाँ खड़े होकर अपना प्रोजेक्ट बना रही हैं |